यख मा जी एक चर्च चा यख ईशा मसीह जी तें पूज्दा छन।

लाइट चन यख लगीं दीवाल मा जी ईशा मसीहा जी की पेंटिंग भी छन लगीं खिड़की छा पर्दा छन।

दीवाल मा जी एक पंखा छ लग्युं घड़ी भी छ लगी रंग बिरंगा गुब्बारा छन लग्यां हर्या रंग का पर्दा छन खिड़की मा जी लग्यां तौलिया बी छा।

यखमा जी एक बस छा या पीला रंग की चा।